जहाज में फ्लैग भी टंगाया हुआ है।

बहोत सारी गाड़िया भी दिखाई दे रही है।

भी दिखाई दे रही है।

आसमान भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में लाइट भी दिखाई दे रही है।

टॉवर्स पर वायर्स भी लगे हुए है।

ये हरे पत्ते भी दिखाई दे रही है।

और एक स्विच भी दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक स्टैचू दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

आसमान भी दिखाई दे रही है।

इंसान ने हरा रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

पर कुछ फूल भी उगे हुए हैं।

आसमान भी दिखाई दे रही है।

गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में आसमान भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में नदी दिखाई दे रही है।

जहाज भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे पेट्रोल पंप दिख रहा है।

कार भी दिखाई दे रही है।